ये एक वायर दिख रहा है लंबा सा हमे खिड़कियां दिख रही है बेड दिख रहा है एक जिस पे एक ल-ख-खम एक रअड दिख रही है।

इस फोटो मे हमे अ-बहुत सारे बलूनस दिख रहे हैं जिससे डेकोरेशन हुआ है सामने हमे हैप्पी बर्थ्डै लिखा हुआ दिख रहा है दो टेडी --

पत्थरों की पेड़ दिख रहा है सुखी लकड़ियां पड़ी हुई दिख रही है आसमान दिख रहा है।

एक लड़का दिख रहा है बैग टांगा हुआ बैटरी वाला ऑटो दिख रहा है ओर एक टंकी दिख रही है काफी बड़ी जिस पर कुछ ज्यादा ड्राविंग्स बनी हुई है पेड़ दिख रहे हैं आसमान--

इस फोटो मे हमे दो बच्चे दिख रहें है जो की शायद डांस कर रहें है नीचे हमे स्पर्श दिख रहा है तीन टूल रखे दिख रहें है पीछे ऊपर हमे छत मे बोहोत सारे प्ला बलुंस दिखाई रहें है जिससे--

ओर नीचे जमीन दिख रही है फार्स दिख रहा है हमको पीछे स्विच बोर्ड दिख रहा है पाइप्स दिख--